यहां बहोत अच्छे घर बना रहे हैं और भी छिड़ाईं लगी हुई है।

यहां एक गाड़ी भी दिखाई दे रही है और बड़े बड़े पेड़ से भी नजर आ रहे हैं।

लेडीज के और बच्चों के बहुत सारे कपड़े दिखाइ दे रहे हैं और लाइटें भी सची हुई है।

और आधे लड़की नीली नीली ड्रेस --

और एक गाड़ी भी यहां खड़ी दिखाई दे रही हैं।

और एक बस पीली एक सफेद खड़ी है।

यहां बहोत अच्छी चप्पल और जूते की दुकान है।

बहुत अच्छा नजारा दिख रहा है और बहुत सारे आदमी इधर--

बहुत बड़ा पार्क सा नजर आ रहा है और बड़े-बड़े पेड़ भी दिखाई दे रहे --

बहुत सारे दुकानें भी नजर आ रही हैं और बोर्ड भी लगे हुए है।

यहां बहुत बड़ा मैदान दिखाई दे रहा है।

और फिर सब के घर नजर आ रहे हैं।

यह गुब्बारों से सजा रखी--

बहोत सुंदर मंदिर दिखाई दे रहा है यहाँ बहोत सारी भीड़ लगी हुई है।